यह तस्वीर में एक बेकरी दिखाई गई है। जिसका नाम है श्री लक्ष्मी बेकर्स एस वी एस ।

जिसका नाम है जैन बुक डिपो।

और यह होटल दो महले का है।

उस कमरे में एक बेड एक कुर्सी और एक टेबल है।